यह एक बहुत बड़ा सा समुन्दर है इसके पीछे से पहाड़ दिख रहे हैं समुन्दर के साइड में घास पुस उगी हुई हैं दो औरते जा रही हैं अपने सर पे टोकरी रखी हुई है जिन्होंने उनके पीछे से एक आदमी साइकिल पर आ रहा है।

ये एक वेडिंग हॉल है ऊपर के तरफ काफी सारे लाइट लगी हुई है सामने की तरफ डेकोरेशन हुई हुई है।

ये एक बुक सेंटर है यहाँ पर हर तरह की बुक मिलती है।

एक आदमी अपनी मिरर फोटो ले रहा है जिसके पीछे एक पाइप है जिस पर तोलिए टंगे हुए हैं उसके पीछे स्टूलस रखे हैं।

ये राधा कृष्णा की मूर्ति है। वृंदावन मे राधा कृष्णा का बोहोत ज्यादा पूजा जाता है।

यहाँ पर एक आदमी फूल बेच रहा है। इसके पास कईं तरह के फूल हैं जैसे सूरजमुखी गुलाब गेंदा और इन फूलों अ उसके पास कईं रंग के फूल हैं।

पीछे की तरफ एक फ्रिज रखा है जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हैं यहाँ पर तरह-तरह की मिठाई हैं।

बिल्कुल हरा भरा और सीढ़ियों के नीचे एक सुखा हुआ पेड़ पड़ा हेै।

ये एक कमरा है इसमे एक बड़ा बेड रखा है बेड के ऊपर दो तकये है चद्दर बिछी हुई है एक कम्मल रखा है।

ये एक बहुत सुंदर राधा कृष्णा की मूर्ति है। इस मूर्ति को काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसमें मोती की टचिंग दी गयी है। कान्हा जी के पीछे एक मोर भी है।